एक चेयर है बड़ी और दो सामने दो छोटी चेयर है।

यह अपनी निशाने की ओर फोकस कर रहे हैं।

यह एक तस्वीर कई मजदूर की है जो छत को बना रहे है यहां पर चार मजदूर है।

कुर्ता डाला हुआ है वाइट कलर का और एक जींस डाली हुई है।